पीछे कुछ ग्रीन प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं।

वुड से बना हुआ अलग अलग प्रकार की चीजें रखी हुई हैं।

इस छवि में मैं बहुत सारे ऊंचे ऊंचे तामूल के जो पेड़ होते हैं वो देख पा रही हूं।

कुछ लड़के भी नजर आ रहे हैं जिसका चेहरा ढका हुआ है।

इस छवि में मैं एक दुकान को देख पा रही हूं।

इस छवि में मैं एक बहुत सुंदर सा बंबू सा बना हुआ घर को देख पा रही हूँ।

उस दुकान के अंदर बहोत सारे चेयर्स टेबल भी रखे हुए हैं।

इस छवि में मैं एक दुकान को देख पा रही हूं।

उसके सामने एक लाल रंग का लैंप जला हुआ है।

इस छवि में मैं एक होटल देख पा रही हूं।

छवि में मैं एक बड़ा सा दुकान देख पा रही हूं।

कुछ लोग बाइक में जा रहे हैं।

इस छवि में मैं बहुत सारे बच्चों को देख पा रही हूं।

आस पास घर भी नजर आ रहा है।

और जो बिल्डिंग में है वो येलो और ब्लू येलो और ब्राउन रंग का है।

और ब्लू और सफेद रंग का बैलून भी मैं देख पा रही हूं।